इस पिक्चर में दो लोग दिखाई पड रहे है जिसमें से एक जेन्ट्स है एक लेडीज है | जेन्ट्स ने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे है वह किसी पत्थर के उपर खड़ा हुआ है पत्थर का कलर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है बगल में और बड़े पत्थर भी दिखाई पड़ रहे है पत्थर का कलर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है।

सामने कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे साइड मे एक ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ रहा एक सामने शॉप भी है।

पिक्चर में एक घर जैसा दिखाई पड़ रहा है ऊपर कुछ सिल्वर जैसे शीशे लगे हुए हैं नीचे एक दरवाजा दिया हुआ है घर का कलर सफ़ेद कलर में दिखाई पड़ रहा है साइड में एक खिड़की भी दिखाई पड़ रही है खिड़की के ऊपर एक तार जैसा दिखाई पड़ रहा है।

इस पिक्चर में एक रौड दिखाई पड़ रही है जो की ब्लू कलर ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रही है जो की चारों तरफ से जॉइन्ड है बी --

पिक्चर में एक घर दिखाई पड़ रहा है जिसमे ऊपर का हिस्सा ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है नीचे एक व्हाइट कलर की दीवाल दिखाई पड़ रही है उस पर एक खिड़की --

इस पिक्चर में एक रोड जैसी दिखाई पड़ रही है जो की ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर एक आदमी जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। सामने कुछ ग्राउंड जैसा दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे मिट्टी ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है।

पिक्चर में एक आदमी ने मछलियाँ पकड़ रखी है उसके सामने एक अंकल बैठे हैं उन्होंने एक शॉल लपेट रखा है साइड में एक डब्बा रखा हुआ है उसमें बहुत सारी मछलियाँ दिखाई पड़ रहीं हैं।

पिक्चर में एक मंदिर जैसा बना हुआ है जो कि ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहा है यहां अंदर जाने के लिए एक दरवाजा जैसा बना हुआ है सामने एक घंटी टंग हुई है जो कि गोल्डन कलर में दिखाई पड़ रही है खंभों पे चित्र दिखाई पड़ रहे है बहुत सारे चित्र बने हुए है।

किसी पार्क जैसा दिख रहा है यहाँ पर बीच में रोड दी हुई है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है रोड के साइड में कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं जो कि ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं कुछ बड़े पेड़ भी दिए हैं जो कि ब्लैक कलर में दिख रहे हैं सामने एक एक घर भी दिखाई पड़ --

पिक्चर में सामने ग्राउंड जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ग्रीन ग्रीन घास दिखाई पड़ रही है सामने एक मकान जैसा बना हुआ है और साइड में लोहे के खंभे भी लगे हुए है नीचे कुछ ईटे भी पड़ी हुई है कुछ ब्राउन जैसा मिट्टी जैसा दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ --